और अलग-अलग विषय में तो हम पढ़ सकते है।

ये किसी प्लांट की फोटो है जहाँ पर चिमनी दिखाई दे रहा है शाम का समय है बहुत ही सुन्दर तस्वीर आई हुई हैं।

यहाँ मनोरम दृश्य देखने को मिलते है यहाँ पर एक तातापानी नामक जगह है एक दलदली नामक जगह है।

इस तस्वीर में बहुत ही सुन्दर कलाकृति का दृश्य दिखाई पड़ रहा है अ जो की सीमेंट्स से बना हुआ दिख रहा हुआ है।

और अपनी श्रद्धा वहाँ पर अर्पित कर रहे है।

बत्तखें है जो किनारे पे आई हुई है बैठी हुई है।

जो वहाँ के नाई है जो वो अपने उस अपना काम बाखूबी से कैंची ले के कर रहे है और बहुत ही रिलैक्स बैठे है।